और अपने दाहिने पैर को ऊपर किये हुए हैं।

ये शेरवानियों का रंग और डिज़ाइन काफी खूबसूरत लग रहा हैं।

इस औज़ार की मदद से ये अपना काम कर रहें हैं।

प्रतिमा के दोनों और शेर के पुतले बनाएं गएँ हैं।

इसके सिर पर हेमलेट है हाथों में बल्ला है |

अलमीरा देखने में काफी अच्छा लग रहा है |

सड़क बहोत सारे वाहन चल रहें हैं।

सड़क के दोनों साइड बहुत सारे घर बने हुए हैं |

आसमान में बहुत सारे ताड़े हैं |

घरों के बीच में बड़ा सा फील्ड है।